उसके नीचे है एक अंदर मंदिर है और दो गेट लगे हुए हैं और अंदर बाहर दिए जल रहें हैं कुछ लोग भी खड़े हुए हैं यहाँ पर बहुत हरियाली है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

एक किराने की दुकान लग रही है जिसमें बस्तर डेरी लिखा हुआ है में ऊपर एक बोर्ड लिखा हुआ है भगवती मिल्क कॉर्नर शक्तिनगर का नंबर है बासठ साठ आठासी बीस तीस। इसका --

और यह है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर लाइटिंग में लगी हुई है यहाँ पर पीछे पेड़ लगे हुए हैं और नीचे हरियाली है कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं ऊपर देखने में बहुत अच्छा लग रहा--

सेंटर लिखा हुआ है इसमें छोटी मछली दिखाई दे रही है काली या सफ़ेद दिखाई दे रही है वो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है लुंगी पहनें हुए चप्पल पहने हुए ऊपर में टंकी रखी हुई है ऊपर हमको दो कैरेटा --

मार्केट की दिखाई दे रही है यहाँ पर मछली रखी हुई है टेबुल पर यहाँ पर काटने को बाल्टी रखी हुई दो लेडीज बैठी हुई दादाजी बैठे दो-तीन लोग और खड़े हुए हैं जो बड़ी मछली को देख रहे हैं।